गमला रखा हुआ है उस तरफ वहाँ से आकाश दिखाई दे रहा है काले रंग का यह स्मारक है यह किसी चीज का बहुत अच्छा स्मारक है।

पेड़ नजर आ रहा है दूर से एक --

दरवाज़ा नजर आ रहा है कुछ खिड़कियां नजर आ रही हैं अंदर की तरफ में एक ग्लास लगा है एक कार खड़ी हुई है।

ना गरारा पहना हुआ है साथ में दुपट्टा ओढ़ा है एक गाउन है पिंक कलर की।

साइड में एक आदमी जैकेट पहने हाथ डाला है जेब के अंदर कुछ बलून्स नजर आ रहे हैं पिंक कलर के रेड कलर के --

उस एक चेयर के सामने आंटी बैठी हैं झोले में से कुछ सामान निकाल रही हैं।

दो चेयर्स दिख रही हैं साइड में मुझे फॉर सीलिंग दिख रही है गोल गोल लाइटें नजर आ रही हैं कुछ पंखा नजर आ रहा है।

मान्या आर्केड का होर्डिंग दिख रहा है इंदिरा आई_वी_एफ घर का भी होर्डिंग दिख रहा है।

पास्ट्स अलग अलग तरह की ज्वेलरीज है।

वुडन कलर का दिख रहा है साइड में फॉल सीलिंग हो रखी है।

यह एक ऑफिस है इस ऑफिस में एक टेबल के ऊपर कंप्यूटर रखा हुआ है।

साइड मे टेबल रखी है। एक मरून रंग की चेयर रखी है। कुछ पेपर्स रखे हैं। पंखा चल रहा है। लाइट चल रही है।

कुछ लोग अरदास लगा रहे है साइड मे एक टेबल रखी है उसपे कुछ समान रखा हुआ है लाइट जल रही है।

पीछे एक फोटो टंगी हुई है कुछ बैगनी और ऑरेंज रंग के --

बलून्स टंगे हैं हरी शर्ट में दो आदमी नाच रहे हैं।

एक वुडन दरवाजा है ऊपर शेड है जिस पे कुछ लिखा हुआ है।

मुझे गिट्टी नजर आ रही है ईटा नजर आ रहा है पाइप पड़ा हुआ है।

इसके साथ नीले रंग का जैक है पीछे कुछ इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं।

सामने कुछ मेन्यू कार्ड लगा हुआ है।

साथ में मुझे एक्सिसस बैंक का होल्डिंग नजर आ रहा है।

इसमें सफेद रंग का कार्डबोर्ड दिख रहा है।

इसमें एक फ्रिज है कोका कोला का जिसमें कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है उसके साइड में पैकेट्स टंगे हुए हैं लेस के और अलग अलग नमकीन के --

मुझे कुछ दूरी पर बैठने की व्यवस्था नजर आ रही है स्टेडियम की चेयर्स --

इस फोटो के अंदर काउंटर पे --